चोकलेट बिस्किट कुरकुरे खैनी एवं पुड़िया यहाँ पर बहुत सारे अनेक प्रकार के खाने-पीने की भी सामान रखी गयी है।

यह छोटी सी हाव ना हवा देके नाव चलती है यह पानी के उपर चलती है यहाँ पर बहुत सारे टिउब भी हैं यह टिउब से बहुत सारे बच्चे तेरते हुए नज़र आ रहे हैं ।